उसके बाहर एक राधे कृष्णा सुपरमार्केट का बड़ा बोर्ड भी लगाया गया है.

कलर की साड़ियां पहनी हुई है एक औरत के सिर पर.

यहां पर बहुत सारी दुकानें दिख रही है.

और दुकानों के सामने तीन गाड़ियां --

ये छह बसेस के अलग-अलग कलर और नाम है यहां पर नीचे ग्रास दिख रही है.

पेड़ पौधे लगे गए हैं और माजू-बाजू में छोटे-मोटे बिल्डिंग्स में.

मराठी में भी दि लिखा है नीचे ग्राउंड पर रेड कार्पेट डाला है और उस रेड कार्पेट पर बहुत लोग चल रहे --

गुफा है और यह गुफा पूरी.

यह एक नदी है यह नदी पहाड़ो के बीच मै है तो उसके आजूबाजू में पहाड़ और बहुत सारी --

सफेद कलर से बनाया गया है और उसके बंगले की डिजाइन ब्राउन कलर से बनाई गई है.

घर ही दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी बार.

यह एक ज्वेलरी की दुकान है.

इस ज्वेलरी के दुकान का नाम रॉकीज ज्वेलर्स है उसके दुकान के साम --

अ अ उसके दुकान के बाहर बहुत सारे अलग अलग व्हरायटी के ज्वेलरीस लगाये गए है उसकी दुकान ब्राउन कलर की है।

यह दिख रहा है यहां पर कुछ सिल्वर कलर का है.

दिखाई दे रहे हैं आसमान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है.

और ये सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉलियां और अंदर बास्केट्स दिख रहे हैं.

बहुत सारी हरी भरी झाड़ियां दिख रही है यहां पर एक फ्रॉग भी दिखाया गया है.

उनके पीछे की दीवार सफेद है और पर्दा ब्राउन कलर में है नी.

सफेद रंग का शर्ट और नीचे.